और सामने दो लैड के लिए की चेयर रखी है। उसके आगे एक कांच की टेबल रखी है। नीचे लोहे की पाइप है और पाइप के ऊपर हमें यहां पर कांच रखा हुआ दिखाई दे रहा है। साइड में देख दोबारा देख लिखा हुआ है।

जोकि फोन चला रहा है और इसमें मास्क लगा रखा है चप्पल पहन रखी है।

ऊपर ए_सी प्ले स्कूल लिखा है नीचे फुल ए_सी क्लास लिखा है।

इस फोटो में हमें सामने ही प्रणाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा जहां पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला दिखाई दे रहा है जहां पे दो हजार उन्नीस भी लिखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे सामने ही काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ डॉक्टर एम एम कुमार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे में कुछ लकड़ी भी दिखाई दे रही है साइड में हमें एक--

फ्रिज का कलर लाल जामनी वगैरा है।